यह एक बुद्ध भगवान का फोटो है जिसमें अनेक प्रकार के लोग देख सकते हैं।

यहां हम अनेक प्रकार के ऑटो देख सकते हैं.

मे हम एक ऑटो उल्टा साइड खड़ा हुआ है।

और यहाँ लाल कलर के टेप से साटा हु अ साटा हुआ कुछ चित्र दिख रहा है औ --

छत के ऊपर बोहोत सारे लोग हैं और--

और यहाँ हम एक घर देख सकते हे जिसमे ए बोहोत सारे पंडित बैठे हुए हे.

जो माथे में टोपी कुछ पहने हुए हैं.

ओर कइ प्रकार के लोग डमरू बजाते हुए जा रहे हैं.

इसमें हम अंकल जी को ब्लैक और वाइट शर्ट पहेन के और गमछा पहेन के देख-देख सकते हैं.

और पिलर के पिलर के रंग वाइट हे.

कार का चटका खुला हुआ हे.

इसके निचे मेट बिछाया हुआ है और वाइट कलर की कुर्सी रखा हुआ है.

यह एक बजार है जिसमें हम एक आदमी को अच्छे से रिक्शा चलाते नहीं देख सकते.

और फूल के नीचे अनेक प्रकार के डिस्को लाइट् लगा हुआ है.